इस अं अं दुकान का नाम है ओम आनंद भंडार अनाज भंडार --

ये एक नेहर की फोटो है यहां पर बादल और पेड़ भी है।

ये एक दुकान है इसमें समान मिलता है ये किराना की दुकान है।

प्लेटफार्म में कोई इंसान नहीं खड़ा है। और ट्रेन भी नहीं है।

यहां पर दो इंसान है और कुर्सियां रखी हुई है यहां पर एक कंप्यूटर प्रिंटर और सी_पी_यू भी है।

ये कटनी का सबसे बड़ा जंक्शन है यहां मुझे दीवारों पर पिक्चर्स भी दिख रही हैं यहां पर बहुत इंसान है।

एक स्कूल की पिक्चर है जिसका नाम मॉर्निंग स्टार पब्लिक स्कूल है।

और सॉस की बॉटल और बहोत सारे अन्य समान दिख रहे हैं।

यहां पर बच्चे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं यहां पर एक व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ है।

दुकान के सामने एक स्कूटी भी खड़ी हुई है।

ट्रैक्टर की सीट काले रंग की है ट्रैक्टर के ऊपर वाले परदे सफेद रंग के हैं।

यह एक जिम है यहां पर लोग बॉडी बनाने आते हैं।

यहां पर दो मंजिल बिल्डिंग है जिसमें दोनों मंजिलों पर दुकान है।

यह एक पहाड़ के बीच में नदी है जो पत्थरों के बीच से बेह रही है।

यह एक सब्जी मंडी की फोटो लग रही है यहां पर एक बड़ी बिल्डिंग भी है और एक पेड़ भी दिख रहा है।

यहां पर पानी की बॉटल ब्रेड और चॉकलेट्स रखी हुई हैं।

और उसके बीच में दो खंबे भी है।

यह एक चश्मे की दुकान है जहां पर बहोत सारे चश्मा रखे हुए हैं।

यह एक रोड की तस्वीर है जिसके अगल बगल मे--

और मौसम साफ नहीं लग रहा है। उसके बगल में एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

नाम लिखा हुआ है जो की लाल कलर से लिखा है।

दुकान के अंदर इलेक्ट्रिक का और भी का कई सामान रखें हुए--

कमरे का कलर पीला है और कमरे की सीलिंग का कलर सफेद है।

बुक स्टोर में बहोत सारी बुक्स रखी हुई है जो कि रोज् और कॉलम्स में रखी हुई है।

बारबर की शॉप में बहुत सारे कांच भी लगे होते हैं।

शादी के मंडप के कमरे का कलर सफेद है उसकी सीलिंग में लाइट्स लगी हुई है।

चेयर भी रखी हुई है और शादी के मंडप में एक चटाई भी बिछी हुई है।

पिक्चर लग रही है जिसके सामने बहुत सारी बाइक्स और स्कूटी खड़ी हुई है।

और यहां पर एक इंसान भी खड़ा हुआ है।

यह एक वॉलीबॉल कोर्ट का वॉलीबॉल कोर्ट की तस्वीर है जहाँ पर लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं।